ब्लू कलर का बास्केट भी दिखाई दे रहा है और फ्लावर प्लांट्स लोग भी--

पंखा और टेबल फैन भी दिखाई दे रहा है।

और टेबल में वायर भी रखा हुआ है।

इस पिक्चर में रेस्टोरेंट दिखाई दे रहे हैं।